यह एक पार्क है। पार्क में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

और कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और करकट भी दिखाई दे रहा --

यह एक जिम स्कूल दिखाई दे रहा है और इसमें एक जिम का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

पार्क में कुछ हिरन दिखाई दे रहे हैं | पार्क में छोटी छोटी घास दिखाई दे रहे हैं ।

दिखाई दे रहें हैं इसमें एक एस.एस.सी. क्लास रूम बोर्ड भी दिखाई दे रह --

पर कुछ फूल पौधे दिखाई दे रहै है और मकान का खिड़की दिखाई दे --

यहां एक मैरेज हॉल है। मैरेज हॉल के गेट पर मोर का फूल से बना --

और फूल का गेट और मैट भी दिखाई दे रहा है। मैरेज हॉल में कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे --

दीवाल दिख रहा है ग्राउंड में कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं।